बाहर कुछ लोग काम कर रहे हैं।

पीछे कुछ लोग भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति एक बड़े गुफा के सामने खड़ा है।

दरवाजे पर व्हाइट और ब्लू बलून से सजाया गया है।

जींस पहना हुआ व्यक्ति अपना फोन देख रहा है।

इस तस्वीर पर एक सब्जी बाजार दिखाई दे रही है।

हरे रंग का टी शर्ट पहेना हुआ व्यक्ति समान उठा रहा है।

पीछे हमें बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर पर एक मछली बाजार दिखाई दे रहा है।

टीन से बने हुए गोडाउन या फैक्ट्री शेड्स नजर आ रहे हैं।

कुछ जगह कचरा भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर एक स्टेशनरी और जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति टूटे हुए लकड़ी के बोट पर खड़ा है जो पानी में आधा डूबा हुआ है।

दूर एक बड़ा पेड़ और कुछ बिल्डिंग भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में कुछ लोग रोड साइड दुकान के पास खड़े है।

कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं और कुछ लोग अपने काम कर रहे हैं।

सीढ़ी में एक फुट मैट और गमले नजर आ रहे है।

पीछे झाड़ी और पत्ती नजर आ रहे हैं।

ज्यादातर लोगों ने यहां मार्क्स पहना हुआ है।

सामने एक आदमी पानी में खड़ा है।

और एक छोटा बच्चा ट्यूब लेकर खड़ा है।

इस लड़के ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है।

कुछ लोग खड़े होकर बाते कर रहे हैं।

आस पास दूसरे मकान और पेड़ दिखाई दे रहे है।

साइड कि बैंच पर दो व्यक्ती बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

सामने चार पानी की बॉटल और एक कप रखा हुआ है।

एक व्यक्ति अल्टर के सामने खड़ा है जहां कपड़ा और फूल से सजावट की गई है।

दीवार पर क्रॉस और धार्मिक तस्वीरें लगाई हुई हैं।

पानी के अंदर रंग बिरंगे गोलाकार रिंग्स लगे हुए हैं।

ये रिंग्स नीले हरे पीले और लाल रंग के हैं।

सभी बच्चे अभी प्लैंक पोजिशन होल्ड कर रहे हैं।

बुक के कवर पे एवरी मेंस फॉर लिखा हुआ है।

पीछे बुक शेल्फ दिखाई दे रहा है।

दुकान पर कुछ रंग बिरंगे बलूंस भी लगाए गए है।

जमीन पर सब्जी उगती हुई दिखाई दे रही है।

व्यक्ति ने व्हाइट एयरफोन और ब्लू टी-शर्ट पहना हुआ है।

जिम के चारों तरफ आईने लगे हुए है।

इस तस्वीर पर एक स्थानीय मछली बजार दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है।

मन्दिर के पीछे बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे है।

पीछे मैदान नजर आ रहा है।

इस तस्वीर पर बहोत सारे लोग पानी में नजर आ रहे है।

पीछे एक बड़ा कॉंक्रीट का पूल दिखाई दे रहा है।

एक औरत पीली साड़ी में गुफा के अंदर झुकी हुई है।

अंदर टेबल और कुछ सामान रखा हुआ है।

एक घंटी भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे एक हॉल के अंदर लोग बैठे हुए है।

दीवार पर एक बड़ा क्रॉस बना हुआ है और येसु का एक मूर्ति दिखाई दे रहा है।

शीशे के दरवाजे पर वेलकम टू बाल दाढ़ी लिखा हुआ है।

उन्होंने एक ह्यूमन पिरामिड बनाया है जो बहुत सुंदर लग रहा है।

पीछे बहोत सारे ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।

ये एडवरटाइजमेंट एक बिल्डिंग पर लगी है जो अभी कंस्ट्रक्शन या ती रेनोवेशन मे है।

कुछ वर्कर्स अपने काम पर लगे हुए हैं।

पीछे एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जिसमें कई खिड़कियां और कपड़े लटके हुए है।

बीच में एक बच्चा भारत माता का रूप धारी हुई है।

सामने एक रिसेप्शन काउंटर है जहां एक व्यक्ति खड़ा है।

साइड में ब्लैक सोफा रखा है जिसमें एक बैग भी पड़ा है।

एक बड़ासा गोल्ड कलर का गेट बनाया गया है।

गेट के आगे दुल्हन और दूल्हा का फोटो भी लगाया गया है।

चारों तरफ पानी से घिरा है।